बड़ा वाला झूला भी काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बनी हुए है। आजू बाजू काफी ज्यादा पेड़ पौधे लगे हुए। ग्राऊंड में मिट्टी जमी हुई है। कहीं कहीं घास जमी है।

ये एक जिम सेंटर है जहाँ पे काफी सारी मसिनस रखी हुए है वर्कआउट करने के लिए अलग-अलग ऊपर टिन टाइप में दिख रहे हैं ।

ईंट की पीछे काफी बड़ी-बड़ी पेड़-पौधे दिख रहे हैं। ऊपर पे यहाँ पर कुछ बना हुआ हैजो की एक ईंट और सीमेंट से बना हुआ हैयहाँ पे काफी ज्यादा घास जमी हुई है नीचे।

शॉप है। ये एक दीवाल है। जहां पे काफी ज्यादा डेकोरेशन हुआ है कार्पेट पर।

और यह एक घर है जो कि कच्चा है। पीछे एक मंदिर दिख रहा है जिसमें झंडा लगा हुआ है।